यहां नीचे की तरफ फर्श पर टाइल्स लगे हुए हैं इनका कलर कत्थई और सफेद है एक आदमी नजर आ रहा है कुर्सियां रखी हुई है कुछ कुछ टैबले रख --

यहा म दो आदमी खड़े है जो कि कुछ खा रहे है निचे जमींन पे टाइल्स लगी है।

यहाँ सामने अ बैटरी वाले ऑटो हैं काफी सारे तादाद में | उनके साइड में कुछ लोग खड़े हैं जो की पीछे जा रहे हैं।

और ये एक वाटर फॉल बना हुआ है। यहां पे एक बच्चा जा रहा है एक आदमी है और कुछ लोग आगे भी खड़े हैं। एक कुछ घर जैसा बना हुआ है जिसपे तीनो का शेड डला है जो कि नीला है। पीछे काफी सारे पेड़ लगे हैं।

जिस पे सीढियां भी हैं और ओ कुछ खंभे लगे हैं। पीछे की तरफ काफी सारे पेड़ नज़र आ रहे हैं।

वहा एक घर बना हुआ है जिसका कलर रंग-बिरंगा है और उसके सामने कुछ दरवाजे है।

उसके साइड में एक और साइकिल खड़ी है। सामने एक बड़ी बिल्डिंग है जिसमे काफी सारी खिड़कियाँ हैं और इसका रंग पीला है।

औरत नजर आ रही है और उसके साइड में भी एक औरत है जो कि बाइक पर बैठकर कहीं जा रही है सामने एक भट्ट है जिसमें जिसका जिसमें काफी सो सारे लोग सवार हैं।

उसके साइड में कुछ समान रखा हुआ है नीचे की तरफ एक चार्जर लगा हुआ है बोर्ड के अंदर उसके ऊपर का जो कलर है वो सफेद है छत का और उसके अंदर काफी सारी लाइटें लगी हुई है और एक औरत भी नजर आ रही है।

यहां सामने की तरफ एक मूर्ति है जिसने भाला पकड़ा हुआ है और दो मूर्तिए और हैं जिसमें घोड़े बने हुए हैं उस पे एक और मूर्ति सवार है उसके साइड में एक और घोड़ा है और एक और मूर्ति है ऐसे ही बहुत सारी मूर्तियों बहुत सारे घोड़े हैं।